रोड के आगे की ओर दो तीन घर भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में दो लाइट भी जल रहा है।

आगे की ओर आदमी भी दिखाईयां दे रहे हैं।

ढेर सारे पेड़ पौधों भी दिखाईया दे रहे हैं।

यह एक फर्श है उसके नीचे ढेर सारे सामान भी दिख रही हैं।

पंखा भी दिखाइए दे रहे हैं और पीछे की ओर एक फ्रिज दिखाइए दे रहे हैं।

पीछे की ओर ढेर सारे सामान दिखाइए दे रहे हैं।

भवंति के बीचे बीच पेड़ पौधा दिखाई दे रहे हैं।

यह एक हॉल हैं जिसके आगे की ओर एक टेबल भी लगा हुआ है।

ढेर फूल भी दिखाई दे रहे हैं और ढेर सारे सजावटी किया हुआ है।

नीचे की ओर वेलकम लिखा हुआ है।

यह एक दुकान है जिसमें एक कैथी कलर के टेबल रखा हुआ हैं।

पीछे की ओर एक कैमरा लगा हुआ हैं और एक दीवार में घड़ी भी दिखाई दे रही हैं।